सामने दो लड़के खड़े हुए हैं| उसने कुछ शर्ट पहनी हुई है| चारों तरफ से लाइट हो रही| नीचे कारपेट लाल बिछी है नीली बिछी है लोग चारों तरफ फोटो खींच रहे हैं।

और वहाँ पीछे जिम का कुछ सामान रखा है बगल से कुछ लोग खड़े हैं| एक नीले--

पीछे टिन है पीछे कुछ परंपर बने हुए हैं पीछे कुछ सामान रखा नीचे गत्ता -पेटी --

बगल पे रैलिंग बड़ी हुई है उस पे रैलिंग लगी हुई है और एक कार्पेट बिछी है।

सामने सफेद कलर की एक-एक चर्च है| उसके चारों तरफ लाल - लाल कलर के छोटे-बड़े घर घर खड़े हैं।